यहाँ पर सुराही है सभी तरीके के माइक्स लगा कर यहाँ पर धूम-धाम से मेले को मनाया जाता है। और यहाँ पर ग्रीन लगी हुई है जो कि नीले कलर की है और --

यहाँ पर जैन धर्म के लोग हैं। जो कि जैन धर्म की पूजा करते हैं।

जिसके आगे दो खंभे लगे हुए हैं और इनमें से पनारा आ रहा है। जो कि --

यह जिम सेंटर है। जिम सेंटर पर क यहाँ पर जिम सेंटर पर हम आकर अपनी बॉडी फिट करने के लिए मशीन को खींचते हैं।

दिखता है। ताल में सूर्य की भांति ही अपने कलर को चेंज कर है। ने --

लड़ी लगाई गई है और --

हथियार भी रखे गए हैं और यहाँ पर अत्यंत सुबह भी --

पर यह लोग एक बैंक में --